बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं | आसमान में पर्पल ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है और नीचे ग्रीन और पर्पल पिंक कलर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है लाइट जलती हुई दिखाई दे रही कांच दिखाई दे रहा है और बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा रहा है।